कुछ औ औरते बैठे हुए हे एक पिंक कलर लाल रंग पिला रंग सफ़ेद रंग के कपड़े पेहने हुए हे |

वह सफ़ेद रंग के दीवारे हे| लाल रंग की मिट्ठी हे | हरे रंग के पौधे हे --